व्हाइट और ग्रे कॉफी कलर का नज़र आ रहा है नीचे कार दिखाई दे रही है कार का रंग--

सभी बच्चे पेपर रखे हुए है बेंच के ऊपर--

सफेद दिखाई दे रहा है नीचे जमीन नजर आ रही है जमीन का रंग भूरा दिखाई दे रहा है आसपास लोहे की जालियों के अंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँं एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें आसपास हरियाली नज़र आ रही है अ -

कुर्सियों का रंग भूरा और टेबल का रंग भूरा दिखाई दे रहा है छतरी का रंग अ नीला-पीला लाल हरा नज़र आ रहा है यहाँ आस--

उसपे पोस्टर चिपके हुए है नीचे जमीन दिखाई दे रही है जमीन में टाइल्स नजर आ रहे है उनका रंग सफेद नजर आ --

कलर्स शार्पनरस और बहोत से समान है यहाँ पर कुछ मैम बैठी है।

ये एक फलों की दुकान है इसमें बहोत सारे फल है अ बहोत सी अंगूर की गुच्छे लगे है ब्लैक अंगूर और ग्रीन अंगूर की--